मीतापुर क्रॉसरोड मितापुर गांधीनगर में राजपूती पोशाक रजवाती रजवाती साड़ी ओढ़नी।

श्री धर्म मंडी करके एक दुकान है कुछ व्हाइट कलर की एक्टिवा पड़ी है दो एक फोल फोर व्हीलर पड़ा हुआ है कुछ बाइक्स इधर पड़े हुए हैं।